और ऊपर में कुछ लाइट्स भी दिखाई दे रही है यहाँ पे और यहाँ पे जो --

यह साइड में भी बहुत बड़े-बड़े पेड़-पोधे दिखाई दे रहे हैं ।

और इधर साइड में बहुत सारे पेड़-पोधे दिखाई दे रहा है।

यहाँ सामने में जिम्स रावल दिखाई दे रहा है और --

और पीछे बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे बड़े-बड़े ।